यह एक बुक स्टोर है | यहाँ पर काफी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है | यहाँ पर अलग-अलग तरह की बूकेँ भी रखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है विगनान बुक सेंटर स्टेशनरी |

यहाँ पर चार लड़किया बैठ कर लंच कर रही है। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ए.सी. भी लगा हुआ है। यहाँ पर बोहोत अच्छी लाइटे लगी हुई है।

यहाँ पर हमे एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लड़का फ़ोटो खिंचवा रहा है और यहाँ पर काफी सारे कैमरा मेन भी है। यहाँ पर बोहोत अच्छी सजावट की हुई है।

यहाँ पर काफ़ी सारे जोमेट्री बॉक्स स्टेपलर पिंस स्टेपलर और कैंची और अलग-अलग आइटम दिखायी दे रहे है जैसे कि गन वगैरा और यहाँ पर टेबल पर एक एक कैलकुलेटर भी रखा हुआ है।

ऐसे भी आप देख सकते है हमे यहाँ पर बुक्स जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम इग्ज़ैम के लिए मोडल और काफी सारी अलग-अलग बुकें खरीद सकते है।

जैसे कि आप देख सकते हैं हमे यहाँ पर एक मच्छी बाजार दिखाई दे रहा है।

वहा पर ऊपर की तरफ एक शेविंग क्रीम भी रखी हुई है और एलसीडी भी लग रही है।

हमें यहाँ पर गार्डन दिखायी दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे फूल दिखाइ दे रहे है जो गुलाबी और पीले रंग की है यहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी दीवाल भी दिखायी दे रहे है।